लाल खम्बे लगे हुए दिखाई दे रही है यहाँ नीचे जल ही जल दिखाई दे रहा है इस जल में एक नावड़ी--

इस इमेज में यहाँ बीच में ये रस्ता रोड बना हुआ दिखाई दे रहा दोनों साइड --

बिल्डिंग बनी हुई छतिंग दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है साइडो में ही कमरे दिखाई दे रहे हैं कुछ अलग--

इसी यिमिज़ में यहाँ तीन खिड़कियाँ बड़ी-बड़ी जालियाँ खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही नीचे फर्श दिखाई दे रहा यहाँ--

कुछ टिशू पेपर की है पंपलेट है या कुछ गिफ्ट बनाते हुए दिखाई दे --

इस इमेज में यहाँ आसमान दिखाई दे रहा है साइड में चिड़िये बनी दिखाई दे रही बहुत खंडर सी पुरानी से किले की दीवाल बनी हुई एक खिड़की ही लगी हुई पत--

यह दिखाई दे रही है जो रंगोली बना रही है ये बहुत सारी लड़कियां यहाँ अलग-अलग ड्रेस पहने हुए है रंगोली में कलर भरते हुए दिखाई दे रही कुछ --

पेट्रोलियम लिखा हुआ है दो लड़की खड़े हुए दिखाई दे रहै है बहुत सारी लाइटिंगे लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में यहाँ एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही कोई शाषकीय कॉलेज स्कूल के--

कुछ यहाँ हर लड़की इन कारों को चेक करते हुए दिखाई दे रहै हैं यहाँ कुछ और भी मशीने --

पे इस इमेज में यहाँ सुधा--

अ जगह पड़ी हुई बहुत सारी दूर-दूर तक दिखाई दे रही है कुछ हरी-भरी घास कुछ एक साइड सूखी सी घास--

स्टेज अपने-अपने बने हुए बहुत सारी पब्लिक दिखाई दे रही है।